भार एक बकरी भी खड़ी हुई है और बहोत सारे लोग बाहर भी है ।

और चार चेयर रखी हुई है ब्लैक कलर की इसमें दो खिड़कियाँ दिख रही है ।

यह है एक होटल है जिसमे चार - चार बैठी हुई है ।

पीछे एक गाड़ी खड़ी हुई है जिसका रंग नीला है।

ये एक खेत है इसमें कुछ लग रहा है आम के पेड़ लगे हुए है बड़े - बड़े तीन पेड़ दिख रहे है ।